यहाँ एक आदमी खड़ा है। शायद हॉल में शादी है और शादी में ये भैया खड़े हैं बाहर। अंदर खुर्चिया लगी हैं। मस्त-सा डेकोरेट हो रहा है।

यहाँ पे एक शॉप दिखाई दे रही है जिसमें साबुन और कुछ फिनाइल विनाइल रखे हुए है और बहोत सी चीजे रखी हुई है।

पता नहीं इसमें क्या है लेकिन बहोत अच्छी दुकान दिखाई दे रही है।

जिसमें चेयर दिखाई दे रही है एक आयना दिखाई दे रहा है और लाइटे दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर कुछ शॉप दिखाई दे रही हैं। ब्लैक कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है एण्ड ऑरेंज कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है येल्लो कलर का कुछ बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर नदी दिखाई दे रही है कुछ झाड़ियां दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े पहाड़ दिखाई दे रहा हैं। खुला आसमान दिखाई दे रही है।

डान्सिंग रूम दिखाई दे रहा है कुछ लाइटिंग दिखाई दे रही है कुछ --

एंड ब्लू कलर की भी ऑटो दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर येल्लो कलर का मास्क दिखाई दे रहा है।

रेड कलर का फ्लॉवर दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का फ्लॉवर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर कोई पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं वाइट का एक दीवाल दिखाई दे रही है पिंक की एक --

पानी की टंकी दिखाई दे रही है खम्बे दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे हैं। रोड दिखाई दे रहे हैं बड़ी-बड़ी --

यह एक हॉल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं। योगा करते हुए टीचर दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रही है। फैन दिखाई दे रहा है।